बहुत बड़ा तालाब है इसके उधर उधर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

उधर पेड़ दिख रहा है और गेट के साइड में लाइट दिख रहा है।

गणपति बप्पा के अगल बगल में प्लेट भी रखा हुआ।

टेज बना हुआ दिख रहा है।

यहां ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है कॉफ़ी लिखा हुआ है और तार तार दिख रहा है।

और सारा कपड़ा भी दिख रहा है और बाहर पुतला में साड़ी पहनाया हुआ है।

उधर पीछे कैलेंडर दिख रहा है जिसमें हनुमान जी का फोटो भी है।

पीछे भी एक फोटो इसमें शिवजी का और पार्वती जी का फोटो है।

यह कोई मंदिर है जहां बाहर घंटी दिख रहा है।

यहां पर एक बड़ा हॉल दिख रहा है जिसमें दरवाजा दिख रहा है जो कि खुल्ला है।

सोफा दिख रहा है पंखा दिख रहा है पक्का का पूरा जमीन है।

और इधर आदमी खड़ा है उधर बड़ी बड़ी इमारत दिख रही है और पेड़ भी दिख रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है और लाइट भी लगा हुआ है और टेबल है।

ये कोई कपड़े का दुकान है जहां बाहर बोर्ड लगा हुआ है।

अंदर का एक आदमी बैठा दिख रहा है चेयर में।

पेड़ दिख रहा है साइड में।

अंदर भी बहोत सामान रखा हुआ है।

यहां बहोत पेड़ दिख रहा है झाड़ दिख रहा है पौधा दिख रहा है मिट्टी दिख रही है।